घर है। यहाँ पर तीन खिड़कियां दिख रही हैं।

फादर खड़े है उनके उनके गले में हार--

है उनपे एक रेड और सफ़ेद कलर का पेंट पुता हुआ है सब पेड़ो पर।

यहाँ एक आदमी कार की रिपेरिंग कर रहा है।

पानी भरा हुआ है। उसमें एक बगुला खड़ा हुआ है। उसके भी येलो कलर के पैर हैं और ऑरेंज कलर के चोंच है। ये --

बहोत लम्बी है और दो विंडो दिख रहे हैं। एक विंडो में पर्दा लगा हुआ है। वो ब्लू कलर का पर्दा है।

यहां पे एक कार दिख रही है एक बिजली का खंभा है उसपे बहुत सारी लाइट इधर - उधर जा रही है। एक--

इसमें होटल का एक बोर्ड टंगा हैं।

और आगे बहोत सारे आदमी एंड और औरतें बैठी हुई हैं और पीछे एक लाल दुप्पटे वाली औरत है। ए भूलू --